कई सारी अलग अलग प्रकार के टाइल्स दिख रही है।

कई सारे सामान रखे हुए मुझे दिखाई--

इस तस्वीर पर यह देख पा रही हूं--

यहां एक खूबसूरत फाउंटेन मुझे--

दिखाई दे रहा है यह सफेद कलर की--

गेट के बाजू में सफेद कलर की दिवालों पर --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

यहां किराने की भी दुकान है।

एक दुकान दिखाई दे रही है वह दुकान--

कहीं ऊंचाई से गिरते हुए मुझे दिख रहा--

मुझे इस तस्वीर में एक नदी दिखाई--

यहां कई लोग दर्शन करने हुए आए दिख रहे हैं।

यह पानी के तरफ मुंह करे हुए मुझे दिख रहा है।

यह शर्मा ऑडियो के बड़े-बड़े काले कलर के बक्से मुझे दिख रहे हैं।

लाल लाल सेब दिखाई दे रहे हैं यहां लगभग--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

यहां पर एक आदमीं उस दुकान पर बैठा हुआ हैं।